मुझे इस चित्र में एक नदी दिख दे रही है नदी के किनारे एक बोट खड़ी है।

इस दुकान में बहोत सारे सेल्फ लगे हुए है इन सेल्फो में चश्मे रखे हुए हैं।